काफी सारी ये उ की एम मूर्तियों की फोटो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक मिट्टी का पेड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे चुहिया बैठी ओ जो काफी सुंदर लग रहा है।

ये एक होटल है जिसके बाहर एक शीशे का है जो काफी सुन्दर लग रहा है। यह होटल इस होटल पे इस टाइप का कलर हो रहा है तो ये एक लकड़ी का लग रहा है।

अ यहाँ पर एक दीवार दिखाई दे रही है जिसमें ग्रीन और पिंक कलर का डिजाइन बना हुआ है जो काफी सुंदर लग रहा है।

यहाँं पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उं उं यहाँं पर बहोत सारी झाड़ियां लटकी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक स्टोर है जहाँ पर एक--

पर कुछ ई रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुन्दर लग रहे है | ये ई रिक्शा यल्लो ग्रीन कलर के हैं सामने की दीवार पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ग्रीन कलर का पर्दा डला हुआ है। बाहर शीशे का गेट लगा हुआ है। बाहर एक मीटर र र लाइट का मीटर लगा हुआ है। एक बाइक भी खड़ी हुई है।

बोर्ड के पीछे बहुत सारी झाडिया दिखाई दे रही है कुछ लकड़िया पड़ी हुई दिखाई दे रही है।